यहां आस पास बसे भी दिखाई दे रही है यहां पे बहोत सारे पटाके फुट रहे है और लोग भी यहां बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

यहां पे बहोत सारी लड़कियां जो लहंगा पहने हुए बैठी है पीछे वो चोटी में गजरा लगाया हुआ है।

यह एक रेलवे स्टेशन है यहां पे येलो कलर की--

खंभा भी दिखाई दे रहा है जहां से लोग फोटो खिंचवाते हैं और यह फिसलपट्टी है यहां पे बहोत सारे झूले लगे हुए हैं और यह अंधेरी फोटो है जिसमें बहोत --

यह एक पेट्रोल पंप की फोटो है यहां से लोग पेट्रोल भरवाते हैं यहां एक लड़का है और एक कुत्ता भी है जहां से ये सिक्योरिटी गार्ड भी है जो पेट्रोल भर रहा है।

कार गाड़ी नई दिखाई दे रही है जो यहां से करवा सके और यहां पे दो मोटरसाइकिल भी खड़ी है।

ये बीकानेर की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है यहां पे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है यहां इंजीनियरकॉलेज है यहां पे बच्चों को --

यहाँ अंदर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है और यहां आस पास कोई दिखाई नहीं दे रहा हवेली व्हाइट कलर की है।

और यहां पे इंजीनियरी चल रहे हैं और सीढ़ियां भी चल रहे हैं यहां जाली भी निकाली गई है।

और सर्दियों में आठ से नौ और चार से सात बजे तक का टाइम लिखा गया है यहां पे कोई भीड़ नहीं दिखाई दे रही है सीढ़ियों पे --

यह एक्सरसाइज करने का शोरूम है यहां पे लड़कियां लड़कों के मसाज करती हैं।

यहां यह कोई ग्रीन कलर का डस्टबीन भी रखा हुआ है यह बदवाशी गांव है।

और यहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है बादल भी बहुत साफ है एक पेड़ भी दिख रहा है यहां बाइक और मोटरसाइकिल नहीं दिख रही है।

जाते हैं दुलमेरा से यह रेल स्टेशन यहां एक आदमी भी खड़ा है जिसके हाथ में थैला लिया हुआ है।

यहां पे ये डॉक्टर बैठा है जो इलाज करता है मरीजों का।

और एक दुकान भी है यहां पे बस इतना ही दिखाई दे रहा है और कोई दिखाई नहीं दे रहा --

अंदर व्हाइट कलर की अलमारी दिखाई दे रही है यहां पे ग्रीन ब्ल्यू व्हाइट कार्टून रखे हुए है।